इस पिक्चर में एक स्कूटी और कुछ बाइक्स है।

यह दुकान गाड़ी के रास्ते के किनारे पर बना हुआ है।

इस रेस्टोरेंट में लाइटें ऑन नहीं किया गया है।

में बहुत सारे बैठे हुए हैं।

यहां पर सभी स्टूडेंट्स पराई में लगे हुए हैं।

इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी तरह से लाइट लाइटिंग दिया है।

यह पिक्चर एक पूमा ब्रांड स्टोर की ली गई है।